एक खुली हुई है। एक आधी खुली हुई है।

कुछ खेतों में बो रखा है कुछ खाली हैं।

खड़ी हैं दो मोटरसाइकिल खड़ी है बहुत सुंदर दुकान--

यह एक घर सा नज़र आ रहा है यहां सुंदर सुंदर लाइटें हुई है।

और एक बोरड भी लगा हुआ है और एक बहुत बड़ा बैग भी उधर टंगा हुआ है।

दुकान होती है पेड़ पौधे बेचने वाले की--

दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे गमले भी--